यह एक सुंदर सा गार्डन है जिसके बाहर बहुत सारे बच्चों के खेलने के समानें दी हुई है इनके आगे एक बहुत सा बैठने का जगह भी दिया हुआ है उनके बगल में बहुत सारी --

यह एक पहाड़ी सा इलाका दिख रहा है इनके ऊपर बहुत मोटे-मोटे पेड़ है जिनकी डालियाँए सुखी-सुखी दिख रही है।

और इसके अगल-बगल बहुत सारे लोहे की --

मंदिर मे लाल कलर का पर्दा दिया हुआ है। ये मंदिर बोहोत ही देखने में अच्छा लग रहा है। ये मंदिर वाइट है और इसके आगे छोटा-छोटा पेड़ है। हरा-भरा पेड़ है। उसके अगल-बगल कुछ लोगे दिख रहे हैं जोकि आते-जाते दिख रहे हैं। इसके बगल मे एक कार है।